और अपने शानदार तरीके से फोटो ले रहे हैं।

हम देख पा रहे है यह पंखे का --

और जस्ट सामने में एक पानी टंकी दिखाई दे रहा है और बगल में बहुत बिल्डिंग है।

जो और सामने आसमान में नीले बादा छाए हुए हैं।

हम देख पा रहे है यह एक मंदिर है जहां बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए है दर्शन करने के लिए आए है।

और ऊपर आसमान नीले काले बादल छाए हुए हैं।

जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

तार है जिसमें एक व्यक्ति --

प्रैक्टिस में लगे हुए हैं ये लड़की --

तार दिखाई दे रहे है जस्ट सामने एक खम्भा है जिसमे लाइट की फोकस हमें दिख रहा है और जस्ट साइड में एक ग्लोबल --

जो एक ट्रे है ट्रे मे और एक वहाँ पे चम्मच है और बहुत सारे वाइट पुड़िया माड़हे हुई हैं।

हम इस इमेज में देख पा रहे हैं एक ऑल मोहरी दिखाई दे रहा है।

स्पोर्ट ग्राउंड है इस स्पोर्ट ग्राउंड में मैदान में --

एक साइड मे दिख रहा है बहुत सारा टावर है इसके माध्यम से नेटवर्क --

जिसमें एक लड़की जो है साइकल में ट्रेवल करते हुए --

गुरुदस्ता है जिसमें वाइट फूल खिले हुए हैं जो इस होटल --

यहाँ बहुत सारी मछलियाँ दिखाई दे रहे है मछली मार्केट है यहाँ बहुत सारे व्यक्ति जो है।

बैठे हुए हैं और इस नाव का इस नदी का --

टाइप का एक डेकोरेट कर रहा है।

बहुत सारे गुब्बारे के माध्यम से वहां एक व्यक्ति खड़े हुए हैं।

जो पीले कलर का कैप पहने हुए हैं।

और इस मैदानी क्षेत्र में घास पूस जागे हुए हैं।

दुकान प्रतीत हो रहा है और एक बच्चे बैठे हुए हैं।

और एक ट्रेक्टर में एक संत महात्मा बैठे हुए है जिसको देखने के लिए हज़ारो --

सारे पीले कलर के पौधे हैं।

आता हुआ एक बस दिखाई दे रहा है उसके जस्ट नीचे बिल्डिंग है।

इस इमेज में हम देख पा रहे हैं एक --